उनके ऊपर है रेट सभी लिखे हुए हैं।

यहां दुकान में मुझे बहोत सारी साइकिले नजर आ रही है कुछ ब्लैक कलर में दिखाई दे रही हैं।

और एक बहोत बड़ी नदी दिखाई दे रही है।

और दो मास रखे हुए हैं एक आदमी यहां पे सेल्फी खींच रहा है।

यहां पे मुझे पिलर्स दिखाई दे रहें हैं जिनके ऊपर पुल बना हुआ है और ये घोड़े बने हुए--

इस तस्वीर में मुझे एक बहोत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

खेत में हरा भरा अह नजर आ रहा है और बहुत सारी क्यारियां भी नजर आ र--

बहोत सारी लाइट्स जली हुई है और पंखे लगे हुए हैं।

जिसकी दीवार मुझे गोल्डन कलर की और बहोत सारे डिजाइन बने हुए हैं।

इसके आस पास मुझे कुछ घर भी नज़र आ रहे हैं जंगल में मुझे बड़े-बड़े शुतुरमुर्ग भी दिखाई दे रहे हैं और बड़े-बड़े पेड़ भी नज़र --

आप पास मुझे बड़े बड़े पहाड़ और है झाड़ियां नजर आ रही है यहां पर मुझे बड़े बड़े पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

जो कपड़ों की है यहां पे मुझे बहुत सारी सुंदर सुंदर ड्रेसेस और कुछ ब्लैंकेट देखने को मिल रहे हैं।

यहां पे कुछ टेबल और चेयर्स लकड़ी के बने--